खजूर का पेडा हुआ है देख उममम हरी-हरी दूबा हुआ है देखने मे--

और एक ऑफिस भी बना हुआ है ऑफिस में रंग भी पुता हुआ है आसमानी कलर --